ये एक ही ये बोर्ड लगा हुआ है और सामने एक शटल का गेट लगा हुआ है।

एक कार खड़ी हुयी है रेड कलर की एक आदमी बाइक के पास खड़ा हुआ है एक अन्दर जा रहा है और दो बाहर खड़े हुए हैं।

और पीछे छोटी-छोटी घास भी लगी हुई है पानी के अन्दर और साईड में भी --

ये ऑलिव ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है ऑलिव ग्रीन कलर बोर्ड लगा हुआ है बाहर ब्लैक कलर और नीचे गार्डन बनी हुई है और ये किसी का घर है ।

और अन्दर सीढ़ियाँ जा रही हैं बहोत सारी विंडोज बनी हुयी हैं और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हे सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

ये कार का शोरूम है यहाँ पर बहोत सारी कार्स खड़ी हुई हैं जो ब्लैक कलर की वाइट कलर की हैं।

और नीचे ऊपर ग्राउंड फ्लोर में खड़ी हुई है बाहर साइड में बहोत सारी कार्स खड़ी हुई हैं।

और कुछ लोग बैठे हुए हैं एक शॉप के बाहर आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक रोड की पिक है। ये एक रोड है बहोत बड़ा और सामने एक ऑटो खड़ी हुई है।

ये एक फेरिस पेट्ल्स का बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे फ्लावर एनीवेयर एनीटाइम लिखा हुआ है।

ये एक बस स्टैंड का येन सीन है यहां पे बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है बस खड़ी हुई है एक रेड कलर कि बस उसके पीछे ग्रीन कलर की बस है।

और पिलर बने हुए हैं ब्लू कलर के और साइड में येलो कलर का कुछ बना हुआ है।

ये एक रोड का एरिया है और यहाँ पे साइड में एक बाइक वाला जा रा है और बैक साइड एक कार वाला जा रा है व्हाइट कलर की कार है।

रील की ये रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे एक लेडिज खड़ी हुई है जिसने येलो कलर की साडी और ब्लैक कलर का पल्लू है उसका।

और साईड में एक खेलने की --

बहोत सारी लेडिज हैं और अ रोड बना हुआ है बीच में चलने का --

और गार्डन में फुल लगे हुए हैं जो एक पिंक कलर का और एक रेड कलर का लगा हुआ है।

और छोटे-छोटे बाउंड्री पर प्लांट्स लगे हुए हैं।

कलर की शेड आ रही है दिन का टाइम हैं।

बोहोत सारे जो रेड और अ ग्रीन कलर के रखे है और पत्थर के ऊपर रखे हुए हैं।

एक अ केबल रख हुई है वाइट कलर की साइड में बड़े बड़े --

और ऊपर एक पोल पे लाइट लगी हुई है। एक स्कूटी येलो कलर की रोड पे खड़ी हुई है और बैक साइड एक पोल के--

बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं साइड में दो बोर्ड लगे हुए हैं।

वाइट कलर की दो कार खड़ी हुई एक फ्रंट साइड ए --

नीचे वाइट कलर की एक कार खड़ी हुई है एक शॉप बनी हुई है छोटी सी और बोहोत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं।

ये एक हॉल की पिक हैं जो बहुत सुंदर सजाया गया है सामने एक स्टेज बन रहा है जहाँ पर हार्ट शेप की डिजाईन दी गयी है और फ्लावर्स लगे हुए हैं ।

इमेज लगी हुई हे ऊपर लाइटिंग बहोत हो रखी है और कुर्सी पर लोग बेठे हुए --

ये एक रोड है और बहोत बड़ा कॉरिडोर सा बना हुआ है और बहोत सारे इसमे गेट्स से बने हुए--

आदमी लोग बोहोत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं एक सरदार जी खड़े हुए हैं।

ये किसी का घर बन रहा है और ऊपर की छत का सीन है यहाँ पे बहोत सारी ईंट पड़ी हुई है।

ये रात का टाइम है और ये बस स्टैंड का सीन है यहां पे दो बसें खड़ी हुई हैं।

और यहाँ पे फ्लावर्स की शॉप है ये बहोत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं।

लगा हुआ है और चेयर्स पड़ी हुई है पीछे साइड बिल्डिंग्स दिख रही है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

उसके डी ई को ऊपर कर रखा है फंसा रखा है एक आदमी ने --